यहां एक पेट्रोल पंप है और वहां पे तीन आदमी दिख रहे है और ऑटो आई है पेट्रोल भरने के लिए और कुछ ऑटो उधर दिख रहे है।